ये चित्र में एक वाइट कलर का घर नजर आ रहा है।

इस फोटो में छोटा सा टेंपल दिखाई दे रहा है।

घर का टीना भी ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है।

रास्ता में वाइट कलर का पिक अप गाड़ी भी रोक के है।

इस पिक्चर में छोटा सा रूम नजर आ रहा है।

पीछे साइड में बहोत सारा कॉपी रख के भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाल कलर का ब्रिज भी है।

पानी का अंदर छोटा और बड़ा पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में घर का अंदर वाला वॉल नजर आ रहा है।

सीलिंग में एक बल्ब टांग के है।

इस पिक्चर में टीना से बनाया एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है।

व्हाइट कलर का पैंट और ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के एक लड़की भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में भी व्हाइट कलर का कार्पेट बिछा के नजर आ रहा है।

इस फोटो में छोटा सा रूम नजर आ रहा है।

वॉल में वाइट कलर का और ब्लैक कलर का फैन भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में फल का दुकान नजर आ रहा है।